यह एक मछली बाजार है जिसमे कुछ लोग मछली के कांटे निकाल लहे हैं। मछली को साफ कर-कर के लोगों को बेच रहे हैं।

-- सैलून अच्छा-ख़ासा सजा हुआ है इसमें शीशे लगे हैं आगे सामान रखा है।

एक नीले शर्ट वाले व्यक्ति ने एक महिला को ट्रॉफी देके सम्मानित किया है। एक सफ़ेद रंग के ऑफिसर ने वहाँ पर खड़े हैं।

यहाँ पे एक आदमी अपने लड़की का बाल कटवाने आया हुआ है। उसने बाल पे क्लिप्स लगवा रखी हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लोग आए हुए हैं यहां एक सुधा-पार्लर के नाम से दुकान भी है जहां पे लोग खाने-पिने के लिए खड़े हुए हैं।